जहाँ पर दुकानदार बैठा अख़बार पढ़ रहा है।

आयोजन या जागरण का दृश्य दर्शाया गया है।

प्रस्तुत चित्र में एक नृत्य आयोजित मंच को दर्शाया गया है।

दिखाई पड़ती है तथा ऊपर आकाश मे --

अपना मनोरंजन करता प्रतीत होता है।

ओम डिजिटल केंद्र लिखा हुआ है।

तथा शौचालय को बाहरी रूप से --

तथा इसके ऊपरी छोर पर आदया श्री हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

द जावेद हबीब सेलो लिखा हुआ है।

प्रस्तुत चित्र में एक व्यामशाला का दृश्य दर्शाया गया है।

प्रस्तुत चित्र में एक किराना दुकान का दृश्य दर्शाया गया है।

प्रस्तुत चित्र में महिलाओं द्वारा इस्तमाल किए जाने वाले आभूषण तथा विभिन्न सामग्रियों --

कुछ व्यक्ति खड़े होकर फोटो खींचवाते प्रतीत हो रहे हैं।

तथा लोगो का भी आवागमन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है।

अथवा दूर अवासी भवन को देखा जा सकता है। जो की सफ़ेद ईमारत और लाल और पिली ईमारत से बने है।